कुछ व्यक्तियों ने नहा लिया है और वे भगवान की पूजा कर रहे हैं।

यह एक बस है बस का ड्राईवर गाड़ी के आगे खड़ा हुआ है।

आये हुए हैं। दुकानदार मछलियाँ बेच रहे हैं।

दो लोग पैलेस के बाहर खड़े हुए हैं।

और मछली खरीदना चाहते हैं। एक टेम्पो भी सामने खड़ी हुई है।